एक सामने जो रास्ता बना हुआ है जाने के लिए और अगल बगल भी जंगले जंगले है।

और हरे कलर का पेंट पुता हुआ हैं एक सीढ़ी बनी हुई है एक बाउण्ड्री के अंदर एक कार खड़ा हुआ है मैदान है जिसमे हरी घास जमी हुई है बादल सफेद नीले--

एक बड़ा सा गार्डन बना हुआ है जिस गार्डन में हरे घास जमे हुए है।

जो अंदर जाने के लिए रास्ता बना हुआ हैं।

एक सास की सह शिक्षा दिखने को महा विध्यालय है। जिसमे सफेद और पीले कलर कि पेन पुती हुई है ।

एक नगर पंचायत फरस गाँव है जिसमे एक सा--अ--अ-- गुलाबी कलर का पेंट दिवालों पे पूता हुआ है सामने एक चयना लगा है जिसमे ये ताले लगे हुए है।

यहां एक छत हैं जी छत पे रेती रखी हुई हैं एक तगाड़ी रखी हुई हैं गिट्टियाँ हैं और एक आदमी दो आदमी जो मसाले--